ये कोई स्कूल का दृश्य है। जहाँ पर कई सारी छात्राएं जो हैं वो अंदर जा रही हैं कुछ बैग लेकर अंदर जा रही हैं बहुत सारे अध्यापक जो हैं वहाँ खड़े भी हुए हैं।

स यहाँ पर दो महिलायें और एक अं-अं पुरुष है और यह एक तए का ऑफिस है जहां पर अं-टेलीफोन है और ये-ये आपस में कुछ बात करके --

ज़मीं बनी हुई है खुला हुआ आसमन है चारो तरफ हरियाली है।

ये भी एक तरह का जनरल स्टोर है यहाँ पर भी मतलब की किराने का सामान मिलता है और यहाँ पर इसको ग्रीन कलर से इसकी पुताई करि गई है यहाँ पर --

यह राजू कृष्णा अ जनरल स्टोर है। यहाँ पर किराने का सामान मिलता है। यहाँ पर हर तरह का सामान मिलता है चाहे वह कुरकुरे हो --